ये एक सामने रेस्टोरेंट है।

छतरियां लगी हैं रंग बिरंगी जिसमें नीला येलो स्काई ब्लू रेड ग्रीन कलर है।

चुन्नी से डेकोरेशन की हुई है।

ये एक सामने रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है।

और नीचे जमीन पर हरे रंग का कारपेट बिछा है।

ये एक सामने कॉलेज हैं जिसका नाम हैं एस_एम कॉलेज हाजीपुर।

स्टैंड है जहां पर काफी सारी साइकल खड़ी हुई है।